लिखल बा निक लागता देखले मे ठेला बा ठेला पे हरियर कलर लाल कलर पेंट भईल बा घर बा बहुते अच्छा लागता लाइट लग--

रूम ह अच्छा लागता टाइल्स लागल बा शीशा लागल बा निक लागता लागल बा कूलर लागल बा निक लागता ना अच्छा लागता न गमला लागल बा पौधा लागल बा।

घर अ सुंदर लागता देखले मे काला गेट बा सफाई करतन एक जनी पेड़ बा पौधा बा सुंदर --